ये एक अ किनारा इस स्टोर है स्वादिस्ट केंद्र है।

येह एक बोहोत बड़े मंदिर का फोटो हैं जोकि काफी बड़ा बना हुआ हैं जिसका कलर क्रीम कलर का हैं इसके अंदर काफी अलग-अलग कलर्स की लाइट लगी हुई हैं।

रेंट वाले रखे है।